जो पूजा कर रही है वो नदी में नहा रही है।

वो नीचे ऊपर टिन शेड घिरा हुआ है।

पैकिंग भी होई हुई रखी है और नीचे टाइल लगी हुई है।

और रूम हैं ये है बच्चों खेल खिलौने का सामान मिलता है इसके अंदर।

पूरे छत पर है सामने घर है एंटो के--

यह एक बाई रिपेयरिंग की दुकान है इसके अंदर बहोत सारे चाबी पन्ने रखे हुए हैं अलमारी में।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

नीचे टाइल लगी हुई है और दीवार पर वाइट कलर हुआ हुआ है।

और बहुत सारे कपडे टंगे हुए हैं नीचे लाल कलर की मेज बिछी हुई है।

ग्राउंड में जम रहा है और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

ये एक स्कूल है इसके अंदर बहुत सारी मेज और चेयर रखी हुई है और एक टेबल है।